इस होटल का नाम उत्सव है और यहाँ ए.सी. लगा हुआ है और इनका कलर व्हाइट है।

और इनमे बल्ब द्वारा सजावट है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं।